जिसके सामने काफी सारे गाय भैंस चरते हुए दिख रहे है आसपास काफी पेड़ --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

यहाँ पर टेंट लगाके एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है यहाँ पर ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ हैऔर स्टेज भी लगा हुआ हैंयहाँ कुछ भी दिखाई दे रहे हैं।